कलर का है एक अ लाल कलर का है ब्लू कलर का है एक पिंक कलर का है।

और जो कुछ लोग अअ बैठ गए हैं कुछ लोग कुछ किसी चीज --

और इस इन सब में से में खाती हूँ गाजर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।

ऐ.सी. रेस्ट्रोन्ट ये मतलब ये रेस्टुरेंट है| यहाँ पर डेकोरेट किया है बहुत अच्छी तरीके से ये पर लोग खाना खाने भी आते है और जो कोई बाहर से आते है जिनको घर नहीं रहता है रेंट लेकर एक-दो दिन रुक जाते है।